और यहाँ पे पर्दे भी बिछाए गए है जोकि गोल्डन कलर के है और लाइट भी अलग -अलग तरह की लगी गई है ।

बहुत बड़ी बिल्डिंग है और यहां पे अलग अलग तरह के फूल भी है और--

यह शायद एक चॉकलेट फैक्ट्री का दृश्य है जहाँ पे एक जनरेटर से चॉकलेट को गरम किया जा रहा है ।

यहाँ पे तीन तीन इंसान है जो ट्रेड्मिल पे भाग रहे है और उनके आगे एक शीशा भी है जिसमें अलग--

और आजू बाजू फूल है और पीछे एक कुर्सी भी है यहाँ पे सीलिंग पर भी अलग- अलग तरीके की लाइट है और नीचे भी टाइल लग गए है जिनका कलर है वाइट ।

वहाँ पे ऊपर एक ब्लू पथरा भी लगा हुआ है और यहाँ पे पीछे एक ब्रिज भी है और उसके यहाँ पे भी एक पथरा लगा हुआ है ये--

यह दृश्य एक होेटल का है जहाँ पे बहुत सारे टेबल लगे गए है और यहाँ पे एक टेबल फैन भी है--

यहाँ पे वो उसके ऊपर एक बिल्डिंग है वहाँ पे दो खिड़कियां भी है और उनके बीच मे हिन्दी में कुछ लिखा गया है पोस्टर में--

वहां पे एक सीट भी लगी बहोत सारी सीट भी लगी गई है जो कि मेरे हिसाब से होटल का दृश्य है।

वहाँ पे दो लकड़े भी लगाए गए है और वो हथौड़ी और कील लेके कुछ कर रहे है वो शायद दो मजदूर है जिन्होंने कुछ--

ऊपर एक अ वहाँ पर एक पेड़ है और बहुत सारी बहुत सारी ग्रीनरी है और वहाँ पे आसमान चाप है और बाजू मे एक बिल्डिंग है।